और काफी बडी बडी लाइटे ज़्वलति हुई दिख रही हैं बिल्डिंग का पेंटिंग कलर कुछ पिंक कलर में दिख रहा हैं कुछ बॉक्स बगेरा बने हुए दिख रहे है और कुछ पर्सन खड़े हुए दिख रहे हे किसी ने पिंक कलर का ड्रेस पहेन रखा हे किसी ब्लू कलर का पहन रखा --

पेड़ दिख रहा है पेड़ ग्रीन कलर का दिख रहा है सामने पोस्टर दिख रहा है ब्लू कलर में और सामने गेट दिख रहा हैइसमें काफी अच्छे सजावट की हुई दिख रही है।

इमेज में एक बसस्टॉप दिख रहा है बस के उः बसस्टॉप के अंदर कुछ बसे रखी हुई दिख रही है बस का जो पेंटिंग कलर है कुछ वाइट है कुछ येलो है कुछ ग्रीन कलर दिख रहा है और यहाँ पर काफी बड़ा बसस्टॉप है।